पीछे एक बडा घर दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ सामान भी रखे हुए नजर आ रहे है। स्विमिंग पूल के अंदर भी कुछ लोग हैं।

यहाँ एक बड़े से ऑफिस की फोटो है।

यहाँ बोहोत सी गाड़ियां चल रही हैं।

यहाँ ये तीनो इस गड्ढे पर देख रहे हैं।